सी एम द्वार जो लिखाया गया यहाँ पे ऊपर देखेंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है आसमान भी --

देख रहे है जो की किसी बगीचे या पार्क या क्या बोला जाये इसको यह फोटो है।

जो की बहुत बड़ा हॉल है

यहाँ पे बेडिंग मौजुद है प बगल में काफी अच्छा प्यारा पेड़ भी मौजुद है जो की छाया में काफी लोग दिखाई दे रहे है यहाँ पे गाड़ी वगेरा साइकिल में लोग दिखाई दे रहे है।

और तो यहाँ जो फोटो है बहुत बड़ा यह खुबसुरती है जो की बहुत बड़ा मुर्ति है जितना ज़्यादा खुबसुरती है उतना छोटा ये मूर्ति है।

जो की खबर यह है की यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हैं उतरे किनारे पे एक आ व्यक्ति दिखाई दे पड़े हैं जो कुछ कार्य करते हुए नज़र आ--

यहाँ पे देख रहे हैं जोकि काफी बड़े- बड़े जो नरियल के पेड़ हैं ।

अरे ब यहाँ आगे सामने देख रहे है की दरवाजा या दूर वाले टूर तो अंदर जाने का रास्ता नहीं है लेकिन बाहर निकल सकते है।

यहां पे देख रहे हैं जो की यहां पे एकलौता यह सुखा जो पेड़ है बहुत ही बड़ा यह बहुत ही प्यारा लग रहा है जो की एक दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो की इधर आते नजर आ रहें हैं।

वैसे फोटो में में देखेंगे पुरानी फोटोज की तरह यह फोटो है जो कि उसी वेडिंग का लगता है जो इंटों से निर्माण किया गया है।

यहाँ पे देखेंगे जो की यह जो सेण्टर है चिहरी लिखा है डिजिटल सेवा पंचयत बहुत ही बड़ा है लेकिन बहुत ही पुराना है यहाँ जी डिजिटल सेवा उपलब्ध है।

और नाम हैं इसका महामाया सरकारी शक्कर कारखाना काफी प्यारा बनाया गया हैं यह कारखाना जो कि हैं सब --